परिवार अस्पताल दिख रिया है।

गुलदस्ते है एक औरत खड़ी है सफेद रंग के है फूल| लाल रंग के है पीले रंग के है हरे रंग के पेड़ मे है नारंगी रंग है।

पत्थर है पहाड़ है पहाड़ के नीचे वो लड़का खड़ा है और फिरोजी शर्ट बनियान पेहना है नीले नेकर पेहना है और चश्मा लगाया हुआ है।